पीछे बालू का काफी ढ़ेर है बगल में गिट्टी का ढ़ेर है।

रोड के दाहिने साइड में एक दुकान जहां पे काफी सारे फूल प्लास्टिक के चीज जो है रखे हुए वहां पे एक आदमी है उसको खरीदारी कर रहा है।

उसके बगल में एक बाउंड्री बना हुआ है जो कि काफी बड़ा है।

रोड के सामने काफी हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

एक कोने में कुछ प्लास्टिक के चेयर्स रखे हुए हैं जिसका कलर लाल और पीला है।

के पीछे का भी घर बने हुए हैं जो की पीले कलर के दिख रहे हैं।

सब्जी मंडी में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं जोकि अलग अलग तरीके के सब्जियों को बेच रहे--

बॉलीबॉल का कोर्ट को चारों तरफ से पाइपों के साथ घेरा गया हुआ है और उसमें जाली लगाया गया है हरे रंग का।

ये एक गुफा का दृश्य है और गुफा के नीचे काफी अ अ नुकीले चट्टान निकले हुए हैं गुफा का कलर अ लाइट व्हाइट और ब्राउन मिक्स है।

यहां पे एक शख्स है जोकि नीचे झुक के गुफा में घुसने की कोशिश कर रहा है।

उसके बगल में काफी सारे गमले रखे हुए हैं जिसमें पौधा लगा हुआ है।

सामने एक दुकान है दुकान के ऊपर एक बोर्ड है बोर्ड में फन एंड फूड लिखा हुआ है।

फन एन फूड के सामने एक छोटा सा पौधा दिख रहा है।

इसके सामने एक पिलर है जिसका रंग उज व्हाइट है।

उसके बगल में एक टेबल है जो कि राहुगोल कलर की है और उसके ऊपर पानी का बोतल और मेन्यू कार्ड रखा हुआ है।

गेट के पीछे काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं जो हरे भरे हैं।

दरवाजे के बगल में एक एम_सी_बी लगा हुआ है।

हॉस्पिटल के सामने का जो गाते हैं उसे गेट के नीचे एक महिला बैठी हुई है।

सामने काफी हरा भरा मैदान है जहां पे पौधे लगे हुए हैं।

दुकान के अंदर देखें तो एक आदमी है जो की बैठा हुआ है काउंटर पे।

सामने दो चेयर रखे हुए हैं जो नीले कलर के हैं।

शोरूम के अंदर काफी सारी नई गाड़ियाँ हैं।

गिरजाघर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

बोर्ड में कन्नड़ में कुछ लिखा हुआ है।

इस बिल्डिंग पे एक बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड पे ट्यूलिप गर्ल्स हॉस्टल लिखा हुआ है।

ट्यूलिप गर्ल्स हॉस्टल के दोनों साइड में दो झंडा लगा हुआ है।

ये बिल्डिंग को एल_ई_डी लाइटों से सजाया गया है जिसका कलर सफेद है।

बस स्टैंड में काफी सारे बसेस खड़े हैं।

खिड़की के जो स्लैप है उसपे हाथ धोने के सैनिटाइजर और साफ सफाई की चीज रखी हुई है।

गेट के पीछे काफी सारे हर भरे पेड़ लगे हुए हैं।

उस मंदिर के बगल में एक आदमी बैठा हुआ है जो की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है।

जिम में लेफ्ट साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है फिनिश वॉट यू स्टार्ट ।

उसके बगल में एक रिद्धि सिद्धि रेडीमेड कपड़े का दुकान है जहां पर काफी सारे बच्चों के कपड़े टंगे हुए हैं।